इस तस्वीर में इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक पहाड़ की है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक शॉप की है।

ब्राउन कलर का गेट है बहोत बड़ा बाहर दीवाल में भी बहोत कुछ लिखा हुआ है।

एक आदमी लाल रंग की शर्ट पेहने खड़ा हुआ है ये छोटा बच्चा भी है और पूरे मैदान में बहोत सारे लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं खड़े हुए--

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक पार्क है गार्डन की है।

यहां पर कोचिंग क्लासेस चलते हैं होनहार कोचिंग क्लासेस नाम है।

और बहोत सारे बैनर भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है किसी गुरूद्वारे का है।